और यहाँ पर एक काँच का आयना भी है पे कुछ पेटिया रखी है।

पानी का टैंक रखा है छोटा वाला।

यहा एक हेलिकाप्टर रखा है और कुछ मशीने रखी है एक बड़ा सा और एक लंबी सी सड़क बन रही है हवाई जहाज --

यहाँ पर तीन लोग है और एक तीन लोक इस साइड है ये कुछ ले जा रहे है और बड़े-बड़े से डिब्बे रखे है। हवाई जहाज खड़ा हुआ है।

और बहुत सारे पेड़ पौधे चट्टानें पड़ी हुई है। पेड़ पौधे बहुत सारे है।

यहा पर एक चट्टान दिख रही है। पहाड़ी दिख रही है। पहाड़ी पे एक बड़ा सा पेड़ लग रहा है। इधर भी एक पेड़ है। साइड मे एक छोटी पहाड़ी उधर है। उधर बोहोत सारे घर दिख रहे है। छोटे छोटे पेड़ पोधे भी दिख रहे है।

और एक पोस्टर लगा है और बच्चे खेल र --